हैं यहां पर एक दो आदमी हैं जो कर रहे हैं यहां पर फैन नजर आ रहा है स्विच नजर आ रहे है

कुछ लोग ठहरे हुए है एक लड़का बाइक लेकर ठहरा है ऊपर कपड़े डाले हुए नजर आ रहे हैं बड़े से दरख़्त नजर आ रहे हैं।

यहां पर स्लाब डाल रहे हैं घर के ऊपर स्लाब डाल रहे हैं। वर्कर है जो कैप पहन कर आए हुए हैं। एक आदमी ठहरकर देख रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है मैदान में गाय भैंस बैल दिख रहे हैं ऊपर दरख्त दिख रहे एक टें--

यहां पे ओ_एम_डी_एम_सी डीसा नजर पोस्टर नजर आ रहा है एक आदमी दो आदमी ठहरे हुए है स्वेटर पहेनकर--

यहां पर कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं यहां पर गुलदस्ते रखे हुए हैं बाहर चप्पल चोरी हुई हैं मंदिर के पास से एक इंसान बैठा हुआ है।

अनारे का झाड़ नजर आ रहा है यहां अशोक का झाड़ नजर आ रहा है।

कहां पर गार्डन नजर आ रहा है गार्डन में नजर आ रहा--

यहां पर एक स्कूल है स्कूल की बिल्डिंग बहोत बड़ी है यहां पे लाइट लगी हुई है।

बेल के झाड़ है यहां पे बहुत सारे झाड़ है यहां पे छोटे भी झाड़ है।

मोती नजर आ रही है नीचे बाइक स्कूटी नजर आ कुछ लोग ठहरे हुए हैं एक बच्ची का रख के हुई है एक शॉप है।

यहां पर एक गार्डन नजर आ रहा है गार्डन नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक एरिया यहां बोट क्यों नजर आ रहे हैं? यहां पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है पत्थरो पर बोटिंग पर ऊपर है यहां पे आसमान नजर आ रहा है।